एक इंसान बे चल रहा है।

दीवार में फायर स्टिंग यूजर भी लगाया हुआ है।

दीवार का रंग ऑरेंज है।

एक आदमी ने शर्ट पहना हुआ है जिसका रंग नीला है।

घर का रंग नीला है दीवार का रंग नीला और सफेद है।

बिल्डिंग का आगे एक पोल लगाया हुआ है।

पहाड़ में बहुत ज्यादा घर भी बनाया हुआ है।

बिल्डिंग में खिड़कियां भी लगाया हुआ है।

ये फोटो में मुझे घर दिखाई मिल रहा है।

फोटो में मुझे गाय का घर दिखाई मिल रहा है जिसका अंदर दो गाय रखा हुआ है।

खिड़की भी लगाया हुआ है खिड़की में पर्दा भी लगाया हुआ है जिसका रंग काला है।

ऊपर में पंखा भी लगाया हुआ है।

फोटो में मुझे एक दुकान दिखाई मिल रहा है।

दुकान का अंदर एक टेबल रखा हुआ एक इंसान मिट खा रहा है।

जहां में दो आदमी काम कर रहा है।

बिल्डिंग में दरवाजा और खिड़कियां भी बनाया हुआ है।

मुझे फोटो में एक दुकान दिखाई मिल रहा है।

ये फोटो में मुझे बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई मिल रहा है जिसका रंग सफेद और लाल है।

जहां में बहोत ज्यादा खिड़कियां और दरवाजा भी लगाया हुआ है।

रास्ता में गाड़ी भी रखा हुआ है।

ये फोटो मे मुझे मुर्गी का दुकान दिखाई मिल रहा है।

ये फोटो में मुझे ट्रेन का पटरी देखने को मिल रहा है।